इसमें बच्चा बैठा हुआ है और वहाँ का सीढ़ी दिखाई पड़ रहा है।

यह एक कुत्ता है हॉस्पिटल लाया है डॉक् --

यहाँ पे दो-तीन ब्रेड रखा हुआ है एक प्लेट मे रखा हुआ है। प्लेट व्हाइट कलर का है।

और ब्रेड को एक टेबुल पे रखा हुआ है।